मुझे इस तस्वीर में बहोत सारे मनुष्य खड़ा हुए देख रही है।

खिड़की भी है उसमें पर्दा भी लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में सेफ के ऊपर बहुत सारे दारू रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है जो की शीशे से बना हुआ है।

लोहा के गेट भी लगाया हुआ है।

ऊपर में हाउस ऑफ कैंडी भी लिखा हुआ है।

शेल्व में बहुत सारे कैंडी भी रखा हुआ है । शीशे की टेबल रखा हुआ है । उसमें कैंडी --

रास्ता से एक गाड़ी भी जा रहा है।

मुझे इस तस्वीर में दो मनुष्य चल के दिख रही है।

बाइक और स्कूटी भी रखा हुआ है और गाड़ी भी एक बड़ा सा फैक्ट्री भी है।

उसमें बहुत ज्यादा बुक रखा हुआ है ऊपर में लाइट बल्ब भी है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ा सा समुंदर दिखाई दे रही है।

उसमें बहुत ज्यादा सोफा और टेबल भी रखा हुआ है स्टील का कुर्सी है।

मुझे इस तस्वीर में बाहर का नजारा दिख रही है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ासा दुकान दिख रही है।

मैं लोहा भी लगाया हुआ है।

रेस्टोरेंट के अंदर बहोत सारे गुब्बारे भी लगाया हुआ है।

रेड पोल भी लगाया हुआ है और आसमान भी है।

दूसरा में पानी बोटल बैग रखा हुआ है।

और एक लंबा सा बंबू भी खड़ा हुआ है।

हवा में एक पैराशूट उड़ उड़ रहा है।

शीशा भी लगाया हुआ है।

बहोत सारा मनुष्य भी हैं।

दीवार में सफेद और नीला रंग का है पोस्टर भी लगाया हुआ है।

लंबा लंबा लोहा रखा हुआ है।

नीचे में फसता गड़ेसी भी है।

और ती पानी बोटल भी रखा हुआ हैं।

उन लोगों के हाथ में अगरबत्ती भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक टीना से बना हुआ घर देख रही है।

सेल्फ के ऊपर बहुत सारे सामान रखा हुआ है।